और एक रिसेप्शन डेस्क है जहां पर एक लैपटॉप और एक प्रिंटर दिखाई पड़ रहा है।

उनके सामने एक रेलिंग है जिसपे दान पेटी जुड़ा हुआ है और दोनों फोटो के पास लाल रंग का झंडा भी है।

जोकि एक गैराज के अंदर दिखाई पड़ रही है।

और इन गाड़ियों और ट्रक के सामने हाइवे का फ्लाईओवर भी दिख रहा है।

फोटो में एक दुकान दिखाई दे रही है।

दुकान में शैंपू लोशन बच्चों के डायपर जैसी चीजें बिक रही है।

उन दोनों के बीच में एक डिजाइन के लिए एक पेंटिंग लगाइ हुई है।

जो की दो माले की है छत पर सोलार पैनल लगे हुए हैं।

द्वार के एक तरफ खिड़की है जिसके बाहर सीढ़ी दिखाई दे रही है।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

और उन गेट के पास ऊपर बहोत सारे चिप्स कुरकुरे ये सब है।

जीसके अंदर दो आदमी दिख रहे है एक खड़ा एक बैठा है।

इस फोटो के अंदर एक जिम दिख रहा है।

और एक कोने में एक लाल रंग का छाता है।

इस फोटो के अंदर एक खाली मैदान बना हुआ है।

जो लाइटों से सजी हुई है रात का समय है और होटल काठियावाड़ी एक बोर्ड लगा हुआ है।

रेस्टोरेंट के बाहर तीन कुर्सी दिख रही है जोकि लाल रंग की है।

दोनों के बीच में चार घर जैसा स्ट्रक्चर है और साथ ही साथ एक खुला गार्डन है।

और पीछे भी बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

और दूसरी तरफ बहुत सारा पेड़ दिख रहा है।

वाले एंट्रेंस के पास एक फ्रेम जैसा दिख रहा है।

जो की एक मंदिर से जुड़ा है जिसका रंग पीला और लाल रंग का है।

और उस बड़े मंदिर के बगल में एक और छोटा मंदिर है सफेद रंग का --

इस फोटो के अंदर एक कैफे जैसी जगह दिखाई पड़ रही है।

इसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है और छत पे बहोत सारे सोलार पैनल लगे हुए हैं।

और बिल्डिंग के सामने चार रेक्टएंगुलर बॉक्स डिजाइन में बने हुए हैं जोकि पीले रंग के हैं।

इस फोटो के बीचों बीच एक एल शेप का सोफा है।

एक तरफ खिड़की है सामने की तरफ भी खिड़की है।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान दिखाई दे रही है।

और एक ओर बहोत सारे बिजली के टॉवर बने हुएं हैं।

इस फोटो के अंदर एक ओर लकड़ी से बनी सीढ़ियां दिख रही है।

टेबल के बगल में दो कुर्सिया हैं उनमें से एक के ऊपर एक आदमी बैठा है।

इस फोटो में खाली जगह दिखाई दे रही है बहोत सारे पावर लाइन जाते दिखाई दे रहे हैं।

ये एक छोटा सा कैफे है जिसके अंदर एक औरत बैठी हुई है।

और बोर्ड पर लिखा है हुंडई एंड मारुति कार स्पेशलिस्ट --